और जेब्रा क्रॉसिंग की पट्टी बनी हुई दिखाई दे रही हैं।

और ये दो पेट्रोल पंप नज़र आ रहे हैं जो काफी ज्यादा क्लीन नज़र आ रहे है जिसमे लाइटिंग जल रही काफी ज्यादा--

ये गार्डन की इमेज है जिसमें कई सारे हा उम्म्म स्टेच्यू बने हुए दिखाई दे रहे हैं झूले बने हुए दिखाई दे रहे है वह आसपास पेड लगे हुए दिखाई दे रहे हैं।

इसमें एक सोफा दुल्हा- दुल्हन के लिए रखा हुआ है।